इस इमेज में हमें यहाँ पे कुछ फूल वगैरह दिखाए गये हैं इनसे डेकोरैशन कि गई हैं एक फंकशन चल रहा हैं जिसमें डेकरैशन है।

और यहाँ पे राइट मे एक और दुकान है इसके पास मे एक अंकल खड़े हुए है जिन्होंने पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ है और मास्क पहना हुआ है जो व्हाइट कलर का है और उन्होंने एक पैन्ट पहना हुआ है उसके --

इनके हाथ में फुटबॉल है और यहाँ पे एक लड़की है जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है अंकल खड़े हुए है और यहाँ पे एक रेड कलर --

ये सुंदर सी मूर्ति है इसके पास में डेकोरेशन की गई है जिसमें येलो कलर के फ्लावर है एण्ड कुछ रेड कलर के फ्लॉवर पिंक कलर के फ्लावर भी है एक सोफ़ा है जो व्हाइट एण्ड पिंक कलर का है इसपे दो लोग बैठे हुए हैं।

इस इमेज में हमें एक कॉफी कैफे दिखाया गया है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है और यहाँ पे एक अंकल है जिन्होंने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहाँ पर गिट्टी रेतदा सीमेंट वगैरह भी दिखाई गयी है और इसके अलावा कुछ लोग दिखाए गए है जो यहाँ पे कार्य कर रहे है कुछ मकान बनाने का काम रहे हैं और पीछे बड़ी -बड़ी बिल्डिंग दिखाई गयी है एण्ड यहाँ पे स्काई भी हमें दिखाया गया--